यह एक मैरिज हाल का दृश्य है।

मैरेज हॉल देखने में बहोत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा हैं।

सामने में एक फूलों से सजा हुआ एक स्टेज भी बना हुआ हैं और स्टेज में कुछ लाइटे भी लगाई गई हैं।

दुकान में एक लकड़ी का रेक बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक दरवाजा है जो भूरे रंग का दिखाई दे रहा है।

यह एक बड़ा सा गुफा का दृश्य है जो अंदर से काले रंग का दिखाई दे रहा है।

दीवार के बाहर छोटे छोटे झरने भी लगे हुए हैं।

यह एक चाय के दुकान का दृश्य है।

किनारे पे ही बहुत सारा पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें भी दिखाई दे रही हैं।

यह दृश्य बर्फीले इलाका का है जहां पे बहोत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं।

मछली बहुत सारा दिखाई दे रहा है सभी मछली के मुंह में मूंछ निकला हुआ दिखाई दे रहा है।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

बाहर में कुछ फूल और छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं।

मंदिर के बाहर सीढ़ी बनाए गए हैं और मंदिर को चारों तरफ से स्टील के रेलिंग से घेर दिया गया है।

और यहां पे एक बहुत बड़ा सा चौकी है जिसमें ब्लू रंग का कारपेट और एक बोरा बिछाया हुआ दिखाई दे रहा है।

अंदर में एक शीशे का टेबल है टेबल के ऊपर एक काले रंग का एक टेलीफोन भी है और पास में ही एक आदमी बैठा दिखाई दे रहा है।

यह एक बीज के दुकान का दृश्य है।

दीवार में बड़े बड़े शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बागीचे का दृश्य है।

फूल का रंग उजाला पीला और नारंगी दिखाई दे रहा हैं।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

और बाहर में एक स्टीकर लगा हुआ है जिसमें मे आई हेल्प यू लिखा हुआ है।

असमें ही एक दरवाजा है जो भी भूरे रंग का है।

दुकान आसमानी रंग का दिखाई दे रहा है।

बीच में एक पिलर भी दिखाई दे रहा है और कुछ ग्राहक लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बड़ा सा खेत का दृश्य है।

यह एक खुला जमीन का दृश्य है यहां पे एक घर बनने वाला है।

गड्ढे के बगल में एक और घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

स्टेज के दोनों तरफ उजले रंग का दिवार भी दिखाई दे रहा है।